यु जु मैं दिखेणी सबसे पहली ऑल्टो एट हंड्रेडा दिखेणी ये पर और पिछाड़ी बिटिन एक और गाड़ी दिखेणी वो शायद सुजुकी की अ काले रंग की मैं स्कॉर्पियो दिखेणी।